कुछ गमले बी रखे हुए दिख रहे हैं।

नृत्या संस्था का दिखाई दे रहा हे ।

नाव में दो व्यक्ति नाव चालाते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

धरम की किताबे पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।